यह एक मंदिर का तस्वीर है। यह उजला कलर का मंदिर है और इसके ऊपर में --

यह माता रानी का तस्वीर है यहाँ एक पंडाल में माता रानी की मूर्ति स्थापित की गयी है।

पेड़-पौधे भी है फुल के पौधे भी है और इनपर कुछ फुल भी चढ़ये गए है।

और इसमें कपड़े ड्राई क्लीनर किये जाते है यहाँ पर कोई आदमी नहीं दिख रहा है ।

खुदाई से प्राप्त कुछ सामान रखे गए है जो कि प्राचीन काल में --

यहां पर दो कारें उपस्थित है जो की एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है।

एक ग्रे कलर में है तो एक व्हाइट कलर में है और --

और एक रिक्शा भी लगी हुई है कुछ कार्टून्स रखे हुए हैं ।

और शायद एक व्यक्ति प्रैक्टिस भी कर रहा है ।

एक पतली पाइप बिछाई हुई है और एक साइड में एक सीढ़ी भी है।

यह किसी समारोह का फोटो लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे --

इस समारोह मे भाग लिए है और इन्हे कुछ सार्टिफिकेट मिले है जिसे दिखाकर वे लोग--

जिसका काम घर बनाने में होता है और इसका यूज़ किया जाता है छत ढालने में।